यहाँ पे मछली बिकती है बहुत सारे आदमी मछलियां खरीद रहे हैं यहाँ पे फ्रेश मछलियां बिकती है।

जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है --